तस्वीर दिखा रही है एक बोहोत ही सुंदर केक को जिसमे बोहोत सारे चॉकलेट के बिस्कुट और बोहोत सारे --

दिखा रहा है एक महिला को जो की --

इस तस्वीर में आप देख सकते कुछ फूलों को जो की एक लाईन से रखे गए हैं। और ये माला हैं फूल के ऐसे लग रहे हैं।

इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि बहोत ही अच्छा और खड़ा दिखाई पड़ रहा है।